बहोत सारे समान रखे हुए हैं पास में दो सफेद रंग के कुर्सियां हैं।

यह किसी दुकान का दृश्य है जहां पर बहुत सारे सामान रखी गई है।

तथा दुकान पे बहुत सारे खाने के समान है।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

यहां पर बहुत सारे महिलाएं समूह पर इकठ्ठा हुई है।

ऊपर छत पे बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

सामने कांच की दीवार बनी है जिसमे बहुत सारे पंपलेट्स तथा लिखा हुआ चीज लगा है।

तरफ बहुत सारे घर और बिल्डिंग्स उपस्थित है।

एक ने लाल कलर की शर्ट पहनी है तरह दूसरे ने काले रंग का लाइन वाला शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे टेबल और चेयर रखी गई है।

पेड़ तथा चट्टाने और--

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे उपस्थित हैं ऊपर नीला आसमान भी है।

यह किसी ज्वेलरी शॉप का दृश्य है।

किसी शादी या समारोह का दृश्य है।

साथ ही यहां पर गुलाबी रंग के परदे लगे हुए हैं नीले रंग का लाइट है।

तथा एक लड़का नीले रंग का शर्ट पेहना है।

यह किसी नदी या तलाब का दृश्य है किनारे पर--

सामने एक लड़का बैठा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी मछलियां नीले रंग के चटाई पर रखी--

ऊपर बैठ कर एक लड़की फोन पर बात कर रही है।

एक लड़का सामने हरे रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

तथा और भी लोग हैं जिन्होंने--

यहां पर ये किसी हॉस्पिटल का दृश्य लग रहा है।